दीवार पर पलक भी लगाया गया है दीवार का रंग ग्रे है और ऊपर छत का रंग सफेद है।

फोटो में रखी गई है और यहां पे एक पंडित जी भगवान की पूजा कर रहे हैं उनके हाथ में एक दीपक एवं अगरबत्ती है।

यह चित्र एक किसी पुतले को बनाने का है जहां के अभी कंस्ट्रक्शन चल काम चल रहा है।

एक कूलर है जिसका रंग सफेद है एक कुर्सी भी रखी गई है और एक सामने गेट है जिसका रंग भूरा है।

दो सवारियों को लेके जा रहा है जिसके सेफ्टी गार्ड भी लगा हुआ है इस नाव का कलर नीला --

यह चित्र एक ऑफिस का है जहां पे आदमी काम कर रहे हैं एक दो लड़कियां दिखाई दे रही है जिनका एक --

यह तस्वीर एक पुल की है जिसमें पानी भरा हुआ है और पास में बहुत सारी हरियाली है।

और यहां पे दो नाव दिखाई दे रहे हैं एक नाव पे बहोत सारे आदमी एवं दो नाविक हैं।

स्टेनरी फर्स्ट कॉपी बुक है यहां पे तीन आदमी दिखाए गए हैं जो की किताब खरीद रहे हैं उनके पास एक बच्चा भी है।

जहां पर एक साइड में सभी प्रकार के बर्तन रखे गए हैं और इधर खाना भी बना रहे हैं और दूसरी वाली दुकान है जहां पर कुछ--